मैंदान में कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है। उसके किनारे-किनारे रेलिंग बनी हुई है।

जैसे एक बड़ा बस दिखाई दे रहा है। एक टैक्टर दिखाई दे रहा है। कुछ इ-रिक्शे दिखाई दे रहे हैं।

उनके पीछे कई सारी बसें दिखाई दे रही हैं। वह बसें पीले रंग की हैं। पीछे एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रहीं है। आस-पास कई सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बच्चे कुछ क्राफ्ट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन बच्चों के हाथ में पेपर व फेविकोल है।

इस पिक्चर में एक बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है। हॉल में एक बड़ा शीशा लगा हुआ है।

इस पिक्चर में एक मंदिर दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के दीवारो पर औम बना हुआ है। पिक्चर में सीढ़ियाँ --

पिक्चर लग रही है खुला हुआ मैंदान दिखाई दे रहा है जगह-जगह टिन की छावनी बनी हुई है उसके नीचे एक बेंच रखा हुआ है।

कुंबत पर एक बड़ा झंडा भी लगा हुआ है। मस्जिद के बाहर एक आदमी दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। मैदान में एक बड़ा खम्बा भी दिखाई दे रहा है।

कुछ मेज पे रखे हुए हैं। मेज पर ग्लास तथा जग दिखाई दे रहा है। एक झोपड़ी बनी हुई है।